येलो कलर के कपड़े पहने हैं बहुत सारे--

इस फोटो में घर दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत सारी विंडो है विंडो का कलर नीला है पीला है।

पे बहहोत सारे लड़के हैं जिनके हाथ में ढोल है उन्होंने ब्लू कलर का कुर्ता पहना है।

जिसमें से तीन औरतें एक आदमी एक बच्चा है उसके हाथ में टोकरा है जिसमें कुछ फ्रूट्स --

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहां पे बहुत सारे लोग हैं जिसका कलर व्हाइट है।

चेयर रखी हुई है चेयर का कलर ब्राउन है बहुत सारे काउंटर रखा हुआ है काउंटर का कलर भूरा है नीला है।

पेन का कलर काला है बहोत सारी लाइट्स है इस लड़के ने माथे पर एक --

इस फोटो में मुझे एक स्कूल दिखाई दे रही है जिसमें जयपुर इंटरनेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखा हुआ है।

तार है बिजली के खंभे लगे हुए है ऊपर विंडो लगे हुए इसका कलर ब्राउन है।

ट्रेन मे ए_सी है और पिलर लगे हुए हैं और पिलर का कलर व्हाइट है।